खड़े हैं और शायद अपनी चाय बनने का इंतजार कर रहे हैं।

और सामने उनके श्रद्धालु तस्वीर खिंचवाया रहे है।

और सामने एक वॉचमैन खड़ा है एक आदमी जा रहा है बैंक से पैसे निकलवाने के लिए--

एक आदमी उम्र में बड़ा लग रहा है दूसरा छोटा लग रहा है।

सेक्टर सत्रह मुझ को लग रहा है दिन साफ है बादल घने नहीं है।

पौधे भी दिख रहे हैं जो शायद घास फूस है।

यह तस्वीर एस_बी_आई बैंक की लग रही है।